जैसा की इस दृश्य को देख के हम बता सकते है यह हमारे बनारस स्टेशन का दृश्य है जिसमे लोग बनारस को घूमने के लिए ट्रैन के माध्यम से स्टेशन से बनारस की यात्रा करते हैं।

जैसे ह्रदय बीमारी जैसे इनका ऑपरेशन होता है।

वह अपने खाने को खा रहा है वो भी बिना किसी के--

जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है।